मिट्टी में ग्रास भी दिखाई दे रहा है इस फुटबॉल ग्राउंड में।

सामने में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है जंगल भी--

इस खुला जगह में हमें एक पानी ऊपर उठके दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा थर्माकोल भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

ग्रास भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

सामने में घर भी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में टीना के साथ।

में बहोत सारा कपड़ा दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

का बोतल भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

लाइट बल्ब जलते हुए भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमे--

गैस लाइटर भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

एक पौधा भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में।

बॉटल नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें सामने बोतल बुक्स भी दिखाई दे रहा है।

सीलिंग में इलेक्ट्रिक बफ बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा फूल भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

इसका अंदर में बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

इस घर का बाहर में एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

इस रूम का अंदर में हमें डेंटिस्ट का सामान दिखाई दे रहा है।

और सामने में वाल भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा ईयरिंग और माला भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।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

कपड़ा को बांधने वाला प्लास्टिक भी नज़र आ रहा है इस तस्वीर में हमें।

गेट के सामने में सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में हमे एक घर दिखाई दे रहा है रूम --

स्विच बॉक्स के सामने में पोस्चार और फूल लोग भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

मिशन रूप भी बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

वहां का गेट भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में।

कोने में बाइक भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

इस पिक्चर में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

रूम में फूल पॉट और फूल लोग दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

वाल भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें ग्रीन कलर का।

आगे में वाइट कलर का बड़ा पोस घर जैसा दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का पर्दा भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

अंडा भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

घर का सामने में बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ पौधा नज़र आ रहा है।

घर का अंदर में ताला भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

इसमें बड़ा बड़ा पाइप भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बड़ा बड़ा लोहा भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें--

डेस्क बेंच भी दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे चम्मच भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमें।

सामने में बहुत बड़ा नदी भी नजर आ रहा है।